फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे दो औरतें दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लकड़ी की सीढ़ियां दिखाई दे रहीं हैं।